एक आदमी फ़ोन पे बात भी कर रहा है और एक आदमी सिर्फ एक हाथ जेब में डाल के खड़ा है और और फोटो खिचवा रहा है।

सन स्पोर्ट्स है। उसके जस्ट ऊपर उदय चर्म गुप्तरोग का बोर्ड लगा है। उसके बाजू में लक्मे --

का और कई सारे कप हैं। यहाँ कई सारे डिज़ाइन के कलर रंग-बिरंगे कलर के कप हैं।

कुछ और अदर चीजें भी हैं जैसे टाटा स्काई का बोर्ड लगा हैं सैमसंग का बोर्ड भी लगा हैं उसके बाजु में इंडियन ओवरसीज बैंक का ऐ टी एम भी हैं।